पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार आकाश भी है।

मुझे इस फोटो पर एक घर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं।

लोग बैठ कर योगा कर रहे हैं।

जिसके कलर ब्लैक और व्हाइट है।

दीवार का नीचे का हिस्सा सफेद है।

ऊपर लाइट भी जल रहा है।

पीछे बहोत सारे चेयर और टेबल रखे गए हैं।

दाहिने तरफ एक आलमारी का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

इस इंसान ने ग्रे कलर का शर्ट पहना गया है।

मुझे इस फोटो पर एक बाहर का नजारा दिखाई दे रहा है।

बाहिने तरफ एक कारपेट का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

दाहिने तरफ एक बकेट का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

जिसके कलर ग्रे कलर का है।

दाहिने तरफ बिल्डिंग आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

टेबल के नीचे हैंगर लटका हुआ है।

दाहिने तरफ बिल्डिंग का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक घर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत सारे चक्के रखे गए हैं।

दीवार का कलर सफेद और ग्रीन कलर का है।